उसमें रेड कलर येलो कलर की लाइट जल रही हैं।

उसपे साथ ही कुछ ग्रिल्ल्स वगैरह लगी हैं जो उसकी डेकोरेशन के लिए चल रही हैं।

व्यक्ति इधर उधर जाते दिखाई दे रहे हैं उसकी जो वाल हैं वो रेड कलर की हैं ।

पिक्चर में एक गार्डन शो हो रहा है जिसमें काफी सारे --

इसमें इर्द - गिर्द काफी सारी शॉप्स हैं ।

रखें हैं बट लग रहा हैं की गुलदस्ते हैं।

रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में --

और इसी की साइड में एक ब्लू कलर का बैग भी हैं ।

रंग बिरंगी लाइटे भी शो हो रही हैं।

उसकी जस्ट पीछे उनके टीचर या पेरेंट्स लोग खड़े है साइड में--

तो हो रही है जिस पर लेन्डर का --

पिक्चर में एक गाड़ी शो हो रही है।